यह काफी लम्बा रोड दिखाई दे रहा है ऊपर जिसे हम ब्रिज भी कह सकते है नीचे पानी ही पानी है और ब्रिज के ऊपर एक और कुछ बनाया गया है जो कि सीमेंट से बनाया है।

और ये डबल रोड क्रॉस हो रहा है ये जगा बहुत खूबसूरत है।

दो टीचर है उन्होंने साड़ी पहन रखी है और वो एक लाइन से पूरे बचे बैठे हुए है जिन्हे सब बता रही है और बच्चे कोई लोग--

और दो भाईसाब इसमे कुछ डाल रहे है एक डाल रहे है एक देख रहे है दो प्लास्टिक की बाल्टियाँ भी रखी हुई है एक लोहे का बड़ा सा ट्रंक --

एक टेम्पो है जिसका कलर पीला और हरा है यहाँ पर बहुत खड़े हुए है और टेम्पो का गेट खुला है यह खाली जगह है जहां पर दूर-दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है ।